यह एक पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा हैं।

ओह यह हैंगर्स में भी कपड़े टंगे हुएं दिखाई दे रहें हैं।

और आसमान दिखाई दे रहा है बहोत सारे पेड़ भी दिख रहे हैं।

और यहां कैमरा भी दिख रहा है।

दीवार दिखाई दे रही हैं दीवार पर बहुत बड़े पोस्टर लगे हुए हैं।

टेबल दिखाई दे रहा है टेबल के ऊपर पॉलिथीन दिख रहा है बहोत सारी बिजली की तारे दिखाई दे रही है।

एक बहोत बड़ा शीशा दिख रहा है।

यह एक गार्डन दिखाई दे रहा है गार्डन में बहुत सारा घास लगा हुआ है और आसपास बहुत सारे पौधे दिख रहे हैं।

फूलों की मालायें लगी हुई है बलूंस लगे हुए हैं ओ दीवार भी दिख रही है।

पानी की बाटस दिख रही हैं गिलास दिखाई दे रहे हैं।

और खाने पीने का समान दिख रहा है।

में बादल दिख रहे हैं और यहां पर बहुत सारे ऑटो रिक्शा दिखाई दे रहे--

यहां पर एक बहुत बड़ी ग्राउंड दिखाई दे रही है ग्राउंड में बहुत सारी चेयर्स दिख रही हैं।